गेट है पिलर है गाड़िया है बिल्डिंग को कई सारे रंग मारा हुआ है इलेक्ट्रिक की पोल है।

यहाँ एक एक ब्लू कलर के डब्बे को पकड़ कर देख रहे है आदमी बहुत है। --

एक शादी चल रही है यहाँ फूलों से सजाया है एक कुर्सी है।

और यहाँ टेड्डी बेयर फूल पकड़ कर खड़े हुए दिख रहे है यहाँ कुछ है बहुत सारे आदमी पीछे है लाइट है गिलटर --